ठीक खंभे में सफेद का लाइट लगा हुआ है और नीचे में हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ हैं ।

एक मेडिसिनल प्लांट्सऑफ़ कांगेर वेली नेशनल पार्क में बड़ा होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है होर्डिंग बोर्ड के आस-पास एक बास का झाड़ और पीछे में कुछ बहुत सारी पेड़ो की झाड़ दिख रही है।